बहुत बड़ी नदी भी बनी हुई है।

देख सकते हैं कि यहां पर एक--

दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक --

गया है ये काफी बढ़िया--

है और उसके सामने एक नदी है।